ये जो है फोटो है वो एक रेस्टोरेंट का फोटो है।

वो जो है। वो आ सफ़ेद और पीक रंग में डिजाइन की हुई है।

हाथी जो हैं वो ग्रे कलर का हैं और उसकी दात भी दिखाई दे रहे है।

ये जो फोटो हैं ये स्टेट बैंक के ब्रांच का फोटो है जहाँ पे चामराज नगर की जो स्टेट बैंक है।

और वहाँ पे दो ग्रे कलर के पहाड़ दिख रहे हैं और बोहोत सारे अ बड़े-बड़े पौधे --

आ जनपद अमरोहा ये जो जनपद अमरोहा का स्कूल है और स्कूल के सामने का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे किसी स्कूल या कॉलेज का गेट दिखाई दे रहा है। आ जिसमे से एक गेट बंद है। एक गेट खुल गेट खुला है।